हॉस्पिटल के बाहर दो लोग खड़े हुए हैं एक लगेज बैग रखा है जिसका कलर ब्लू है।

और लड़की ने वेयर किए हैं आउटफिट --

और बिल्डिंग में लिखा है महिला एवं बाल विकास परियोजना ग्रामीण फंदा।

होटल के अंदर एक रिसेप्शन है।

सेप्शन पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

टेंपल के अंदर कुछ लोग हैं।

मॉल की जो बिल्डिंग है उसका कलर क्रीम है।

इस इमेज में हमें एक प्लांट नर्सरी दिख रही है।

और हॉस्पिटल का गेट ब्राउन कलर का है।

इस इमेज में हमें एक टॉप एन टाउन नज़र आ रहा है।

इस बिल्डिंग में हमें एक ग्राउंड नज़र आ रहा है।

इस इमेज में हमें एक लाइब्रेरी नजर आ रही है लाइब्रेरी में कुछ चेयर्स हैं।

कुछ तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं नर्सरी के अंदर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

और इस कारवॉश सेंटर के अंदर कई गाड़ी खड़ी हुई हैं।

इस इमेज में एक क्लासरूम है।

ऑरेंज और क्रीम है।

और यहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

इस इमेज में एक टॉप एन टाउन है इस टॉप एन टाउन में--

और कुछ लड़कियों की ड्रेस का--

मशीन का कलर डार्क ग्रीन है।

बिल्डिंग का कलर लाइट पिंक है।

टेंपल के बाहर बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

और दो लोग खड़े हुएं हैं।

हार में रेड कलर्स के फ्लावर्स हैं।